इस फायर फाइटर ने येलो कलर का हेलमेट पहना हुआ है।

बहुत खूबसूरत गिटार की ये फोटो है।

देखिए ये प्रैक्टिकल चल रहा बच्चों का जितना मुझे नज़र आ रहा है। ब --

ये प्रथमा बैंक की कोई शाखा है।

इस स्टोर के सामने मेडिकल की तरह लग रहा था लेकिन ये साइज मेडिकल का होता नहीं है हो सकता है --

एक्जॉस्ट नज़र आ रहे है।

मार्केट्स में कि यहाँ एक मेला टाइप का लगा हुआ होता है।

ये दो गधों की तस्वीर है।

अमरोहक बैंक की ब्रांच भी कुछ इस तरिके की है।

जो नाले टाइप के बने होते हैं वहाँ पानी बरसात में अक्सर भर जाया क --